विद्रालय है ये।

और एक बोहोत बड़ा पेड़ है ये यहाँ पे बोहोत अच्छा लग रहा है आसमान है नीला- नीला आगे बोहोत

और यहाँ पर आसमान है। पेड़ है। इसमें बहुत कम पत्ते है और टेंक रखा हुआ है यहाँ पे और गेट लगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर।